जिसमे आदमी इसको देकने के लिए अंदर जा रहा है।

और उधर से फिसलकर फिसलकर निचे --

टिन का दिवार बना हुआ है।

लगता है आदमी सीढ़ी पे बैठ के रंग रहा है।

रखा हुआ है और बाटी में सब्जी सब है।

ई बाँध का फोटो है।